जिसमें वाडीलाल आइसक्रीम मौजूद है।

यह एक कपड़ों की दुकान है।

इस चित्र में एक बस नजर आ रही है।

यह स्कूल एक रोड के किनारे स्थित है।

हेमंत रेडियो टार्च पैसे पंखे कूलर टी_वी ।

कई लोग वर्क कर रहे हैं।

यह एक हॉस्टल के कैंटीन का चित्र है।

इस किले के चारों ओर बहोत हरियाली है।

नदी के किनारे बहोत सारे वृक्ष नजर आ रहे हैं।

इन सभी बक्सों पर हमें पार्ले लिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें चार व्यक्ति बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

ऊपर सफ़ेद आसमान नज़र आ रहा है।